और नीचे की तरफ भी रोशनी दिखाई दे रही ऊपर की तरफ भी रोशनी दिखाई दे रही है।

छत बनी हुई है और यहां डेकोरेशन हो रखा--

ये आरजे ड्राइविंग स्कूल है और यहाँ पर गेट लगे हुए हैं।

और इधर की तरफ खंबे लगे हैं और ये एक फूल है।

और यहाँ पे टीन की दुकानें सी लगी हुई है।

और यहाँ कलरफुल डिजाइन से पेंट हो रखा है इधर की तरफ सामने की तरफ नीले रंग का एक शीशा सा लगा हुआ है।

और यहाँ पे बहुत चौड़ी रोड लगी है और यहाँ पर जो है सीटें हैं बैठने के लिए।

यहाँ ये पहाड़ पहाड़ पे कुछ घर बने हुए हैं।

और यहाँ पर बैनर लगे हुए बोर्ड लगे हुए हैं बहुत बड़े-बड़े हाँ ये बैंक है।

और इधर जिराफ बना हुआ है एक और इधर ऊपर की तरफ पहाड़ है पहाड़ियाँ बनी हुई है और उधर पहाड़ के पेड़ भी हैं।

तार पर और यहाँ पूरे का पूरा ग्राउंड का खाली वो खाली है और मिट्टी का है।

ये पहाड़ों का बैंक है घर है और वहां पे बैंक बनी हुई है और यहां पर रोड है और सामने की तरफ इधर की तरफ अह पेड़ लगे हुए हैं और उस पे बर्फ पड़ी हुई है।

वो पुरा करी हुई है लिखा हुआ है कुछ कारीगरी है।

और यहां पर दो तीन बुलेट खड़ी हुई हैं और जो पार्किंग में हैं और एक सामने की तरफ झंडा दिखाई दे रहा है और पहाड़ों के ऊपर बादल ही बादल दिखाई दे रहा है।

हर एक खाने में बहुत सुंदर ही डिजाइन होना है पीछे की तरफ भी पेड़ हैंबहुत सारे और यह पहाड़ी इलाके का मंदिर हैकोई--

पाइप के चार-पांच पिलर हैं और एक बीच में पिलर बना हुआ है और इधर की तरफ भी ऊपर की तरफ पहाड़ है और वहाँ भी कोई बैठा हुआ है।

यहाँ पर मिथुुस टैटू की शॉप हैऔर यहाँ पर बहुत सारे टेढ़े-मेढ़े शकल के टैटू बने हुए हैं शकले बनी है।

और यहाँ पर एक टीवी एलसीडी हैजिसमें जो चल रहा हैऔर उसमें कुछ दिखाई दे रहा है।

और यहां पर एक बहोत बड़ा यहां पर जो है टीला सा है।

यहां पर एक कपड़े की दुकान है और यहां पर बहुत सारे थान रखे हैं टाइ बने हुए कपड़े रखे हुए हैं।

और ऊपर जीना जा रहा है वहां पे भी अह दुकान है अह उसकी रियल्टी गेमिंग की दुकान है यहां।

यहाँ पर अ कुछ यहाँ मंदिर सा बना हुआ है।

ये अह गाड़ी ठीक करने की दुकान है और यहां पर बहुत सारे--

औजार रखे हैं प्लास रखा है पेचकस रखा है टेस्टर रखे हैं।

अ जो गाड़ियों में सही करने के लिए सामान लगता है।

और उधर भी एक झोपड़ी है उसमें जो है गेट बंद है उसका और इसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियां सी हैं और इसके चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं औ यहां पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं सामने।